जावा सर्वलेट्स एंड जेएसपीएस के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे वेब सर्वर वेब कन्टेनर हम सरल जावा सर्वलेट और जेएसपी बनाना भी सीखेंगे
यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं उबन्टु वर्जन 1204 नेटबीन्स इडे 73 जेडीके 17 फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र 210 आप अपने चुनाव का कोई भी वेब ब्राउज़र उपयोग कर सकते हैं
इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको निम्न के साथ परिचित होना चाहिए नेटबीन्स इडे उपयोग करके कोर जावा और एचटीएमएल यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
सर्वलेट्स और जेएसपी पर जाने से पूर्व हम पहले वेब ब्राउज़र को समझ लें
वेब ब्राउज़र एक सिस्टम है जो इंटरनेट पर एंड यूज़र्स को विषय वस्तु प्रदान करता है
इसे इंटरनेट सर्वर भी कहते हैं
वेब कंटेनर वेब सर्वर का कॉम्पोनेन्ट है जो जावा सर्वलेट्स के साथ इंटरैक्ट करता है
इसे सर्वलेट कंटेनर भी कहते हैं
सर्वलेट कंटेनर सर्वलेट्स को इसके अंदर निष्पादित करने की अनुमति देता है
अब सीखते हैं कि एक सरल सर्वलेट कैसे लिखते हैं
नेटबीन्स इडे खोलते हैं
इडे के बायीं तरफ प्रोजेक्ट्स टैब पर क्लिक करें
हमने पहले माइफर्स्टप्रोजेक्ट नामक एक सरल प्रोजेक्ट बनाया था
आप इसको यहाँ इडे के बायीं तरफ देख सकते हैं
अब इस प्रोजेक्ट के अंदर एक सरल सर्वलेट बनाते हैं
माइफर्स्टप्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करें
न्यू पर जाएँ और सर्वलेट्स पर क्लिक करें
एक न्यू सर्वलेट विंडो खुलती है
क्लास नामे में मायसर्वलेट टाइप करें
पैकेज नामे में orgस्पोकेंट्यूटोरियल टाइप करें
फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें
एड इन्फॉर्मेशन टो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर webएक्सएमएल पर क्लिक करें
हम देख सकते हैं क्लास नामे orgspokentutorialमायसर्वलेट है
हम देख सकते हैं सर्वलेट नामे क्लास नामे के समान ही है जो मायसर्वलेट है
ध्यान दें उर्ल पैटर्न क्लास नामे के समान ही नाम है यानि मायसर्वलेट हम इसे मायसर्वलेटपाठ से बदल सकते हैं
फिर फिनिश पर क्लिक करें
myservletजावा के लिए इडे के द्वारा बनाया हुआ सोर्स कोड सोर्स एडिटर विंडो में दिखता है
हम देखते हैं myservletजावा पैकेज orgस्पोकेंट्यूटोरियल में बना हुआ है
ध्यान दें कि सर्वलेट केवल किसी अन्य जावा क्लास की तरह है
उसके अतिरिक्त जावा एक मैन मेथड नहीं रखता
अब ग्लासफिश सर्वर के बारे में कुछ सीखते हैं
सर्वलेट सर्वलेट कंटेनर में डिप्लॉय हुआ है
हम ग्लासफिश को अपने सर्वर की तरह उपयोग कर सकते हैं
सर्वलेट कंटेनर ग्लासफिश का कॉम्पोनेन्ट है जो सर्वलेट्स के साथ इंटरैक्ट करता है
अब नेटबीन्स इडे पर वापस आते हैं
ध्यान दें कि मायसर्वलेट हॉटप्सर्वलेट को बढ़ाता है
कोड के निचले हिस्से में हम हॉटप्सर्वलेट मेथड्स देख सकते हैं
इन मेथड्स को देखने के लिए बायीं तरफ प्लस सिग्न पर क्लिक करें
हम डोगेट डोपोस्ट और गेटसर्वलेटिंफो मेथड्स देखते हैं
हम इन मेथड्स को ओवरराइड कर सकते हैं
हम देख सकते हैं कि यहाँ सबसे ऊपर प्रोसेसरीक्वेस्ट नामक एक और मेथड है
कन्फ्यूशन से बचने के लिए हम प्रोसेसरीक्वेस्ट और गेटसर्वलेटिंफो को मिटा देंगे
अतः हमारे पास दो मेथड्स डोगेट और डोपोस्ट बचे हैं
अभी के लिए हम डोपोस्ट देखेंगे
किसी सरल उर्ल अनुरोध के लिए डोगेट डिफ़ॉल्ट मेथड है
अतः डोगेट मेथड के अंदर हम कुछ कोड टाइप करेंगे
हमने पहले ही प्रोसेसरीक्वेस्ट मेथड को मिटा दिया था
अतः प्रोसेसरीक्वेस्ट मेथड के लिए मेथड कॉल को हटाते हैं
इसको डोपोस्ट मेथड से भी हटाते हैं
अब डोगेट मेथड पर आते हैं
हम देख सकते हैं कि यहाँ दो पैरामीटर्स हैं जो डोगेट मेथड को पास किये जाते हैं
पहला रिक्वेस्ट है और दूसरा रिस्पांस ऑब्जेक्ट है
यह भी ध्यान दें कि रिक्वेस्ट एचटीटीपीसर्वलेटरक्स्ट प्रकार का है
और रिस्पांस ऑब्जेक्ट एचटीटीपीसर्वलीसपॉन्स प्रकार का है
हम एचटीएमएल रिस्पांस को क्लाइन्ट को वापस भेजने के लिए रिस्पांस ऑब्जेक्ट प्रयोग करेंगे
इसके लिए हमें प्रिंटवृतर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा
ध्यान दें कि प्रिंटवृतर क्लास पहले से ही इम्पोर्ट की हुई है
डोगेट मेथड के अंदर टाइप करें प्रिंटवृतर स्पेस राइटर इक्वल टू रिस्पांस डॉट गेटव्राइटर ब्रैकेट्स खोलें और बंद करें सेमीकोलन एंटर दबाएं अगली लाइन में टाइप करें राइटर डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में वेलकम फिर फाइल सेव करने के लिए Ctrl एस दबाएं
अब सर्वलेट को रन करते हैं
बायीं तरफ प्रोजेक्ट्स टैब में माय सर्वलेट डॉट जावा पर राइट क्लिक करें
फिर रुन फाइल पर क्लिक करें
हमें एक सेट सर्वलेट एक्जिक्यूशन उरी डायलॉग बॉक्स मिलता है
ओक पर क्लिक करें
जब ब्राउज़र विंडो खुले उर्ल को देखें
यह लोकलहोस्टकोलों 8080 स्लैशमाइफर्स्टप्रोजेक्ट स्लैश मायसर्वलेटपाठ है
यहाँ माइफर्स्टप्रोजेक्ट कांटेक्स्ट नामे है और मायसर्वलेटपाठ उर्ल पेटर्न है जो हमने सेट किया था
हम देखते हैं कि टेक्स्ट वेलकम ब्राउज़र पर प्रिंट हुआ है
अब वापस नेटबीन्स इडे पर जाते हैं
प्रिंटलन मेथड में हम एचटीएमएल कोड पास को कर सकते हैं
उदाहरण स्वरुप वेलकम को ह3 टैग में रखें
अब फाइल सेव करें
चूँकि पहले ही हमने इस सर्वलेट को डिप्लॉय किया था हमें इसे दोबारा रन करने की ज़रूरत नहीं है
वेब कंटेनर अपने आप से इसका पता लगता है
अतः हम ब्राउज़र पर वापस जाते हैं
रिफ्रेश हम मैसेज वेलकम को अलग फॉर्मेट में देखते हैं
अब इडे पर वापस आते हैं
इस प्रकार हमने सफलतापूर्वक एक सर्वलेट बना लिया है
हम सर्वलेट्स उपयोग करके कोई भी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं
हमने एचटीएमएल कोड को दर्शाने के लिए सर्वलेट प्रयोग किया
ध्यान दें कि हमारे पास जावा कोड के अंदर एचटीएमएल कोड है
हालाँकि यह संभव है पर बड़े वेब एप्लीकेशन को करने के लिए यह मुश्किल है
और स्वीकार्य अभ्यास नहीं है
यह बेहतर होगा कि आप इसको जेएसपी से बदलें
हम सर्वलेट्स और जेएसपीएस का उपयोग देखेंगे
सर्वलेट्स और जेएसपीएस एक साथ विषय वस्तु से प्रस्तुति को अलग करने के काम आते हैं
सर्वलेट्स कंट्रोलर की तरह और जेएसपीएस व्यू की तरह कार्य करता है
सर्वलेट्स जावा कोड के अंदर एचटीएमएल कोड रखता है
जेएसपीएस एचटीएमएल कोड के अंदर जावा कोड रखता है
हम इनके बारे में अधिक आने वाले ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे
अब नेटबीन्स इडे को वापस खोलते हैं
अब हम एक सरल जेएसपी पेज बनाएंगे
माइफर्स्टप्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करें
न्यू पर जाएँ
और जेएसपी पर क्लिक करें
एक नयी जेएसपी विंडो खुलती है
फाइल नेम में वेलकम टाइप करें
और फिनिश पर क्लिक करें
बायीं तरफ प्रोजेक्ट्स टैब पर क्लिक करें
हम वेब पेज फोल्डर में welcomeजेएसपी देख सकते हैं
अब एडिटर में हेलो वर्ल्ड को वेलकम से बदलें
ध्यान दें कि वेलकम ह1 टैग्स के अंदर है
अब फाइल सेव करें
ब्राउज़र पर वापस आते हैं
उर्ल में माइफर्स्टप्रोजेक्ट स्लैश के बाद टाइप करें welcomeजेएसपी हम आउटपुट वेलकम देखते हैं
इसलिए प्रस्तुति के उद्देश्य से जेएसपी को वरीयता मिलती है
इसको सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न सीखा वेब सर्वर और वेब कंटेनर के बारे में एक सरल सर्वलेट बनाना एक सरल जेएसपी बनाना कृपया सुनिश्चित करें कि आपने आगे बढ़ने से पहले यह ट्यूटोरियल समाप्त कर लिया है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
अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉन्टैक्ट एटी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी को लिखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी httpspoken tutorialorgNMEICT इंट्रो पर उपलब्ध है
लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम अग्रणी सॉफ्टवेयर मन्क के कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी कार्यक्रम के अंतर्गत योगदान दिया गया है
इस स्पोकन ट्यूटोरियल के लिए उन्होंने इस विषय वस्तु की पुष्टि भी की है
मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद